इस इमेज में सामने यहां पर एक जिम दिखाई दे रही है यहां पर कसरत करने की मशीनें रखी हैं और यहां पर एक व्यक्ति भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक ब्रिज दिखाई दे रहा है और सड़क पर कुछ बाइक खड़ी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में सामने देखिएगा यहां पर एक पुस्तक की दुकान दिखाई दे रही है जहां पर ढेर सारी किताबें यहां पर नजर आ रही हैं।

इस इमेज में सामने देखियेगा यहाँ पर एक ऑफिस दिखाई दे रहा है जहां पर देखियेगा अं अलग-अलग कैबिन बने हैं और एक लड़का काम करता हुआ नजर आ रहा है।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

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक मकान की छत दिखाई दे रही है और यहां पर कई सारी बिल्डिंगे भी नजर आ रही है।

इस इमेज में देखियेगा सामने यहाँ पर एक वाइट कलर की बस दिखाई दे रही है और उसके पास में एक ढाबा भी नजर आ रहा है।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

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है और आसपास कुछ शो प्लांट लगे हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने देखिएगा यहां पर एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है और यहां पर बोर्ड पर अंबा सारा लिखा हुआ नजर आ रहा है।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

इस इमेज में देखिएगा सामने पहाड़ का दृश्य दिखाई दे रहा है यहां पर रास्ते में बिच में एक डॉगी खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में सामने देखिएगा यहां पर एक बड़ी सी इमारत दिखाई दे रही है और नीचे कई सारी कारें खड़ी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज मे देखियेगा सामने यहां पर एक प्लेग्राउंड दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ लड़के क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे है।

इस इमेज में सामने देखिएगा एक हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर काउंटर पर कुछ लोग एन्क्वाइअरी करते हुए नजर आ रहे हैं।

और उसके ऊपर पी_जी स्कूल ऑफ कॉमर्स लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज मे सामने देखियेगा यहां पर एक काउंटर दिखाई दे रहा है और दीवार पर एक्स को एस कोर फिटनेस लिखा हुआ नज़र आ रहा है।

इस इमेज में सामने देखिएगा यहां पर वाटर पार्क दिखाई दे रहा है सामने बड़ी सी फिसल पट्टी भी नजर आ रही है।

इस इमेज मे सामने देखियेगा यहां पर एक रूम दिखाई दे रहा है जहां पर डबल बेड लगा हुआ है और सामने कुर्सी पर दिखाई दे रही है।